एल_ई_डी दिख रही है जिसपे कुछ चल नहीं रहा सामने एक लोहे का पुल दिख रहा है और कुछ पेड़ दिख रहे हैं।

नीचे की तरफ कुछ गमले दिख रहे हैं जिनमें पेड़ पौधे खड़े हुए हैं।

मंदिर पर कुछ पेड़िया दिखाई दे रही है जिन पर कुछ दिए जलते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ मोमबत्ती रखती हुई ज दिखाई दे रही है।

मंदिर के ऊपर एक बड़ा सा पैनल लगा हुआ है सोर लर पैनल लगा हुआ है जिस पर एक लाइट जल रही है।

इस फोटो में सामने एक बड़ा सा जे एन सुजुकी का--

इस फोटो में सामने एक अटैची रखी हुई है जिसके अंदर एक लैन्स दिखाई दे रहा है और सामने कुर्सी पर बैठा हुआ डॉक्टर दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में सामने एक बड़ा सा कार वाशिंग सेंटर दिखाई दे रहा है जिस पर एक गाड़ी खड़ी हुई है।

इस फोटो में सामने एक गली में एंबुलेंस खड़ी हुई दिख रही है जिसके पास में एक शटर लगा हुआ है।

इसके अंदर कुछ बर्फ ही बर्फ रखी हुई है और कुछ रसगुल्ले दिख रहे हैं।

इस फोटो में सामने एक बड़ा सा संदूक दिखाई दे रहा है।

वो लाल रंग का है सामने एक बड़ा सा गमला रखा हुआ है जिसके अंदर कुछ फूल रखे हुए हैं।

कुछ पर्दों पर कुछ फूल लटके हुए हैं और कुछ पीछे की तरफ एल एल_ई_डी जल रही है जिसमें नीला रंग निकल रहा है सामने की तरफ एक कपड़ा पड़ा हुआ है।

फोटो में कुछ बच्चे स्टेज के ऊपर कुछ परफॉर्म कर रहे हैं।

सामने एक बेड पड़ा हुआ है जिस पर एक तकिया रखा हुआ है और कुछ चार्जर रखे हुए हैं।

पीछे एक दुकान दिखाई दे रही है जिस पर कुछ डमी खड़े हुए हैं और कुछ सूट पहने हुए खड़े हुए हैं।

और एक महान पुरुष की चित्र दिखाई दे रहे है। ऊपर की तरफ मंच पर कुछ मालाएं लगी हुई हैं।

और कुछ जैमाने बधे हुए है नीचे कुछ पंडाल बने हुए है जिनमे आदमी बैठे हुए हैं।

इस फोटो में एक सैलून दिखाया गया है एक कुर्सी पर बैठा हुआ लड़का दिखाई दे रहा है जो कि फोटो ले रहा है।

मुझे एक स्लैब दिखाई दे रही है जिसमें कुछ अलग अलग तरीके के सामान रखे हुए हैं पीछे एक ऐ_सी लगी हुई है।

सामने एक रेलिंग दिखाई दे रही है और एक मकान दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर एक प्लास्टिक का पाइप लगा हुआ है।

उसके आगे एक मशीन रखी हुई है और कुछ कंटर कंटेनर पड़े हुए हैं।

इस फोटो में सामने एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

की नीले रंग के दरवाजे पर लगा हुआ है नीचे दरवाजे की कुछ सरिया दिखाई दे रही है।

इस पर तीन चंगले लगे हुए जो की लोहे के हैं।